इस इमेज में एक अ स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है।

इस इमेज में एक बड़ा सा पिलर दिखाई दे रहा है। एक इमारत दिखाई दे रही है। जिसमे एक बडी सी घंटी है।

सामने एल जी लोगो बना हुआ है एल जी लिखा हुआ है रेड कलर की स्ट्राइप् पर आस पास एल ई डी लगी हुई है एल सी डी दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पर नीचे सेट ऑफ़ बॉक्स रखे हुए है।

एक चद्दर का शेड दिखाई दे रहा है सामने एक बिल्डिंग है जो की वाइट कलर की है और एक पेड नज़र आ रहा है।

इस इमेज में एक किले टाइप वॉल दिखाई दे रही है यहाँ पे एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है।

मशीन्स दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक ए.टी.एम. दिखाया गया हैंजिसके ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड बना हुआ है और व्हाईट कलर में--

इस इमेज में दो लेडीज बैठी दिखाई दे रही है चेयर का कलर ब्राउन है टेबल का कलर ब्राउन है।

आस पास कई सारी बाइक्स खड़ी है सामने एक लोडिंग ट्रक खड़ा है जो की ब्लू कलर का है पास ही में एक वाइट कलर की--

पास ही में कुछ गमले रखे हुए हैं साइड में एक चेयर है जिसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ है साइड में कुछ पेड पौधे दिखाई दे रहे है और एक व्यक्ति--

और सामने एक बोर्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर का है उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स लाइब्रेरी --

यह इमेज किसी पार्क की दिखाई दे रही है यहाँ पर तार की फेंसिंग करी हुई है छोटी मोटी घास दिखाई दे रही छोटे--

आस पास बाउंड्री वॉल बनी हुई है एक व्यक्ति अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड कलर और ग्रे कलर की बिल्डिंग है।

और इसका कलर क्रीम एंड रेड है नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है जिसके ऊपर शेड डला हुआ है पास में ही एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक साइकिल दिखाई दिया जी-जिसपे एक व्यक्ति बैठा है।